गार्डन के बीचो बीच वॉटर फाउंटेन दिखाई दे रहा --

इस फोटो में आपको वॉलीबॉल का प्रैक्टिस चल रही है वॉलीबॉल की मॅट लगी हुई है बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस फोटो में आपको बहुत सुंदर गार्डन दिखाई दे रहा है और घास भी उगी हुई है मैदान में ऊँचे ऊँचे पेड़ पौधे नजर आ रहे है और बहुत अच्छी --

झू है और यह एक--

पिलर भी खड़े हुए हैं और--

कुछ भक्त बाहर बैठे हुए हैं उनके सामने और प्रेयर कर रहे हैं।